इस इमेज में आप देख सकते हो ये नदी बहुत बड़ी है।

जरूरत के सामाने मिल सकेगी। जहां पर बैटरी वगैरा जहां पर आप कुछ भी ले सकते हो।

इमेज में हम ग्राउंड को ग्रीन कलर

इस ए.टी.एम. में आप देख सकते हैं की यहाँ से आप विथड्रॉ कर सकते हैं पैसा और राईट हैण्ड साइड आप को डस्टबिन दिख रही है यह ए.टी.एम. सेवा में उपलब्ध दिखाई दे रही है।

ये एक सैलून है जिसका नाम निम् सैलून है जहाँ पर आप डेनिम सैलून है जिसका जहाँ आप अपने बाल कटिंग और दाढ़ी बना सकते हो जहाँ आप बियर्ड और बाल को शेप दे सकते हो।

यहाँ पर पोस्टर लगाए हुए हैं हीरो हेरोइन के जगह पर आप बाल सेट करा सकते हो।

इस इमेज में आप देख सकते है वो रेड कुर्ता पेहन के बहुत सारे जन खड़े हैं और एक दुसरे को देख रहे --

इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये गुंबद जैसा बना हुआ है जहां पर एक जन काला कलर का कुर्ता पहन के हाथ जोड़ के खड़ा है उसके ठीक सामने व्हाइट कलर की धोती में एक जेंट्स उसको पकड़ के खड़ा है।

ये बिल्डिंग व्हाइट कलर की है जहां बहुत सारे स्टीकर लगे हुए है जिसमे बच्चे व्हाइट कलर की यूनिफार्म विथ येलो बेल्ट पहने हुए है।